यह से मिठाई हो गया लड्डू हो गया पड़ा हो गया ।

यहा पे पार्टी हो रही है बोहोत लोग बेठे हुए बेग है।

अगल हुए पखा चल रहा है लाइट बोहो--

यह फोटो मे बहोत सारे गेट है बहोत आदमी है तरह तरह के आदमी सब है।

सर पहने हुए है पैंट है फायर ब्रिगेड है गेट है ईंटा है पेंट हुआ हुआ है बहुत लाइट लगे हुए --

यहाँ फोटो में बड़े बड़े बिल्डिंग उसमे गेट है उसमे शीशा लगा है उसमे लाइट लगे है पंखा है तार है।

अकाश है बड़े बड़े फिल्ड है जुला है फुल है।

हेंडिल है छक्का है हवा है लाइट है बॉल है मशीन है इंजन है चाबी है रोड है ।

आकाश है सीमेंट है पाइप है लकड़ी है पेड़ है बड़े बड़े--

या फोटो में एक स्कूल है बच्चे लोग बोहोत सारे है दो दो छोटी बंधे हुए बच्चे लोग है को कोट है ।

डॉग्स है पैन है पेन्सिल है जुटता है मोज़्ज़ा है बेंच है टेबुल है ब्लैक बोर्ड है।

यह एक दुकान में साड़ी का इसमें तरह तरह के कलर कलर के साड़ी हर कलर की साड़ी है लाल साड़ी है येलो साड़ी है ब्लू साड़ी है पिंक साड़ी है।

डिब्बा में पन्नी में तरह तरह की दवाए है फोटो है कुछ इस पे लिखे हुए है शीशा है डोर है ।

घास है लाइट तार के पेड़ है फल के पेड़ है तुलसी जी के पेड़ है।

बॉल है पंखा है फ्रिज है।

या फोटो में आकाश है बादल है कुचब स्टाइल है पेड़ है पत्ते है जमीन है धरती है मिटटी है ।

यहाँ फोटो में बोहोत सारे आदमी है फूल है नाला है मूर्ति है फोटो है कुछ लिखा हुआ है।

पत्ता है कपडा है माला है गार्डन मोबाइल है अछे अछे लोग है बोहोत --

यहां फोटो में आकाश है बादल है पानी है तरह तरह के घर है बोहोत सारे घर है बोहोत अच्छी बोहोत जगह है।

कुकिंग क्लास है घर है पेड़ है पत्ते हैं घास है रोड है मिट्टी है।

पत्तिये हैं कटर हैं पैर हैं लोहा का पाइप हैं छट हैं पथान हैं इस टाइप का बना हुआ हैं लकड़ी हैं।

ये बहुत सारे आदमी हैं खा रहे हैं बर्गर बैठने के लिए--

थाडा गेट खुला हुआ हें शिट हें गमछा हें एनिगेटर हें बोल हें शीसा हें एंडी ने --

या फोटो में पेड़ है पत्त्ते है बहुत सारे फूल है रोड है ईटा रे प्लास्टर है।

अरे दिन है अँधेरा नही है घर है प्रकाश है बादल है तरह तरह--

हेमलेट है इंजन है बट्रिक है मोबाइल है।

पराठा है पनीर है प्याज है मठर है।

तो ठो गाडी है टायर है सीसा है के--

पर्दा है तरह तरह के चीज हैं बहोत अच्छे लग रहे हैं बहोत फूल है पेड़ में पत्ते हैं बहोत अच्छे अच्छे से--

बेठे में साइकिल है मोटरसाइकिल है चार चक्का है।

लैपटॉप है नया नया सीट है टायर है बल्ब है पंखा है कुर्सी है।

रखु तो भी आदमी सारी है कुरता है फुल सब है।

गुआर है कुछ लिखा हुआ है छा छक्को पे बना हुआ है।

यहा फोटो में बोहोत सारे कुर्सी है टेबुल है।

बेंच है बरे बरे पंखा है पाइप है।

फ़ोनकी है फ़ोनकी का डिब्बा है नट है तार है --

आइना और उस ट्रेन डा डबल स्टेंड है।

टी_वि है जुला है कैलंडर है कार्ड है स्वेटर है।

यहाँ फोटो में नया गाडी है नया टायर है टुब है गेट है।

दुकान है आदमी है टी शर्ट है शर्ट है।